नीचे एक गेट दिखाई दे रहा है जो की सीसे का बना हुआ है उसके अंदर एक मशीन रखी जो कि नीले रंग की है नीचे का फर्श है वहाँ पर एक आदमी खड़ा --

एक ऑटो जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है सफ़ेद रंग का आस-पास हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ पर हरे-हरे पत्ते दिखाई दे रहे है बिजली के तार --

नजर आ रही है बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है निचे सड़क --

नजर आ रहें हैं कुर्सियाँ रखी हैं जो की लाल लाल रंग की है कुर्सियों पर लोग बैठे हुए --

ये गार्डन का दृश्य है जिसमें चारो तरफ हरी-हरी घास दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ों पर हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ पेड़ है जिनकी सुखी टहनियाँ दिखाई दे रही हैं।

ये एक सैलून का दृश्य है जिसमें पीछे की दिवार है जो की सफ़ेद रंग की छत दिखाई दे रही है दीवाल है जो की हरे रंग की है उस पे एक --

यहाँ पे एक गार्डन है गार्डन में हरे-हरे पे पौधे दिखाई दे रहे हैं फाउंटेन है जिसमें पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें गुम्बद है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि सफेद रंग की जिस पर हरे रंग से आकृति बनी हुई है ऊपर गुंबद दिखाई दे रहा है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का --

एक लॉज का दृश्य है जिसका द्वार दिखाई दे रहा है द्वार पर सफ़ेद रंग रंगा हुआ है काले रंग के बोर्ड लगे हुए हैं पीले रंग के कुछ लिखा हुआ है द्वार पर --

रंगों से सजा हुआ है जिस पर अलग रंग के फूल मालाए लगी हुई है।

नारियल के पेड़ है इ जगह पर दिखाई दे रहा है जहां पर हरी-हरी घास दिखाई दे रही है एक साइकिल खड़ी है जो की लाल रंग की है आस-पास झाड़ियां और फुलवारियाँ दिखाई दे रहा है।

ईटों का बना हुआ है उस पर एक बोर्ड बना हुआ है जो की सफ़ेद रंग का है जो की नीले रंग से कुछ लिखा हुआ है सामने की दिवारे जो की सफ़ेद रंग की है।